और आ पीछे लाल-लाल सीटें --

और उस में कई टाइप्स के प्लांटिंग और कई लोग खड़े हैं।

उधर एक ब्लू कलर का शर्ट पहन के एक अंकल हैं।

यह एक बाहर एक घर हैं।